इस दृश्य में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा--

यह दृश्य एक कारखाना का है।

पहले वाली साइकिल का रंग ब्लू है एवं पीछे वाले साइकिल का रंग लाल है।

साइकिल के पीछे कुछ रखा हुआ है।

सामने कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

अजंता डायरी के बगल में एक बैकर शॉप भी है।

इस दृश्य में हमें पीछे की ओर बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने कुछ कुर्सी एवं टेबलों के सेट हैं जिस पर सफेद एवं व्हाइट रंग के पर्दे लगे हुए हैं।

प्रत्येक में सेम ही प्लांट लगे हुए है।

एवं स्टैंड के अगल बगल कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

सामने कुरकुरे बिस्किट का दुकान भी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक सब्जी मंडी का है।

जैसे शिमला फर्श बिन कटहल कद्दू इत्यादि।